लिबर ऑफिस कैल्क में लिंकिंग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे कैल्क में अन्य शीट्स का उल्लेख कैसे करें
कैल्क में हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल कैसे करें
यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटू लिनक्स वर्ज़न 1004 और लिबर ऑफिस सूट वर्ज़न 334 इस्तेमाल कर रहे हैं
यदि आपने दोनों स्प्रैडशीट्स सेव की हैं तो लिबर ऑफिस कैल्क आपको अन्य शीट के एक सेल से वर्तमान शीट के सेल में अन्य स्प्रैडशीट से एक सेल को रेफरेंस करने की अनुमति देता है
personal finance trackerओडीएस खोलते हैं
हमारी फाइल की शीट 1 पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर के लिए स्प्रैडशीट सम्मिलित करती है
मैंने कॉलम्स स्पेंट और रिसीव्ड में कुछ राशियाँ जोड़ दी हैं
अब क्रमशः कॉस्ट और स्पेंट के नीचे घटकों का कुल जोड़ निकालें
सी9 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें और फ़ॉर्मूला इस इक्वल टो सुम और कोष्ठकों के अंदर सी3 कोलन सी7 टाइप करें
फिर Enter की दबाएँ
डी9 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें और उसी फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल करके जोड़ निकालें
अब सेल रेफ्रेंसिंग का इस्तेमाल करके हम एक अन्य शीट पर कॉस्ट और स्पेंट में कुल बकाया प्रदर्शित करेंगे
शीट 2 टैब पर क्लिक करें
यह नई शीट खोलता है
अब आ1 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें और इसके अंदर शीर्षक कंपोनेंट टाइप करें
ब1 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें और इसके अंदर शीर्षक बैलेंस टाइप करें
अब हेडिंग के अंदर भागों के नाम प्रविष्ट करें
आ3 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें और कॉस्ट्स टाइप करें
एंटर दबाएँ
कॉस्ट्स के नीचे आ4 उल्लिखित सेल में अगला भाग स्पेंट प्रविष्ट करें
अब खाली सेल ब3 पर क्लिक करें
शीर्षक कॉस्ट और स्पेंट में सेल्स ब3 और ब4 के पास कुल बकाया होगा
जिसकी हमने शीट 1 में गणना की थी
यह रेफ्रेंसिंग से करेंगे
सेल ब3 में सेल रेफरेंस बनाने के लिए इनपुट लाइन के आगे इक्वल टो चिह्न पर क्लिक करें
अब शीट टैब में शीट 1 पर क्लिक करें
इस शीट में हम सेल सी9 पर क्लिक करेंगे जो कॉलम कॉस्ट्स में जोड़ को रखता है
ध्यान दें कि इनपुट लाइन में स्टेटमेंट शीट 1 डॉट सी9 प्रदर्शित होता है
अब इनपुट लाइन के आगे चेक मार्क पर क्लिक करें
ध्यान दें कि शीट 1 में कॉस्ट्स के नीचे डेटा का कुल योग शीट 2 टैब में ब3 से उल्लिखित सेल में अपने आप प्रविष्ट हो गया है
उसी प्रकार से हम रेफ्रेंसिंग के ज़रिये अन्य भागों के कुल योगों को प्रविष्ट कर सकते हैं
यदि यहाँ ढेर सारे डेटा कंटेंट के साथ अनेक डेटा शीट्स हो तो डेटा का सार प्रस्तुत करने के लिए रेफ्रेंसिंग बहुत लाभदायक हो सकता है
अब सीखते हैं कि कैल्क शीट्स में हाइपरलिंक्स कैसे बनाएँ
आप हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल एक स्प्रैडशीट के अंदर एक अन्य स्थान अन्य फाइल्स या यहाँ तक कि वेबसाइट्स पर जाने के लिए कर सकते हैं
personal finance trackerओडीएस में पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर शीट 1 में है और बाकी का कंटेंट्स शीट 2 में है
मानते हैं कि हम शीट 1 से शीट 2 में जाना चाहते हैं
सबसे पहले शीट 1 टैब पर क्लिक करें
यहाँ ब14 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें और शीट 2 प्रविष्ट करें
आप देखते हैं कि नाम शीट 2 इनपुट लाइन पर प्रदर्शित होता है
अब इनपुट लाइन में टेक्स्ट शीट 2 चुनें
टेक्स्ट चुनने के बाद टूलबार में हाइपरलिंक आइकन पर क्लिक करें
हाइपरलिंक डायलॉग प्रदर्शित होता है
बायीं तरफ डॉक्यूमेंट ऑप्शन चुनें
डायलॉग बॉक्स में टार्गेट इन डॉक्यूमेंट आइकन पर क्लिक करें
एक नया टार्गेट इन डॉक्यूमेंट डायलॉग प्रदर्शित होता है
अब शीट ऑप्शन के आगे प्लस सिग्न पर क्लिक करें
डायलॉग बॉक्स जो प्रदर्शित होता है उसमें शीट 2 ऑप्शन पर क्लिक करें
अब एप्ली बटन पर क्लिक करें और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें
अब हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स से एप्ली पर क्लिक करें और फिर क्लोज पर क्लिक करें
सामने सेल में शीट 2 टेक्स्ट के साथ चिह्नांकित शीट 1 टैब प्रदर्शित होता है
अब जब हम टेक्स्ट शीट 2 पर क्लिक करते हैं यह हमें सीधा उस शीट में ले जाता है जहाँ हमें कॉस्ट्स के लिए बकाया प्रविष्ट किया था
हमने एक हाइपरलिंक बना लिया
हाइपरलिंक हटाने के लिए सबसे पहले हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट शीट 2 चुनें
अब दायाँ क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करें
टेक्स्ट अब हाइपरलिंक्ड नहीं है
यह बिलकुल डॉक्युमेंट के किसी भी साधारण टेक्स्ट की तरह है
बदलावों को अन्डू करते हैं
इसी के साथ हम लिबर ऑफिस कैल्क पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे कैल्क में अन्य शीट्स को रेफ्रेरेंस करें
कैल्क में हाइपरलिंक्स इस्तेमाल करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contactspoken हाइफेन tutorialओआरजी पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें spoken हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो आईआई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँहमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद